इसमें एक टीचर पढ़ाते हुए बच्चों को और इसमें चार लड़कियां हैं और पाँच लड़के हैं जोकि अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं।

बोहोत अच्छा समय है। शाम का समय है। सूर्यास्त का समय है।

स्टेज को बहोत सुन्दर सजाया गया है।

पेट्रोल पम्प पर तीन व्यक्ति खड़े हैं जिसमें एक ट्रक भी खड़ा है जो अपना डीजल इसमें भरवा रहा है।

एक व्यक्ति है जो कि काफ़ी उत्साहित है जो फ़ोटो ले रहा है और वो किसी एयरपोर्ट पर फ़ोटो ले रहा है एयरपोर्ट की फ्लाइट है इंडिगो की और बहुत बड़ा हवाईजहाज है जिस के सामने वो फ़ोटो ले रहा है।

काफी अच्छी जिम है ये जिसमें नए नए युवा जिम कर रहे हैं कसरत कर रहे हैं अपनी बॉडी को फिट रख रहे हैं और कुछ बोहोत ही अलग तरीके से कसरत कर रहे हैं।